पर एक ग्राउंड बना हुआ है ग्राउंड के अंदर बहोत सारी घास उगी हुई है छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और लाइट वाला बोर्ड पड़ा है जिसमें ब्लैक कलर की पिन डाली हुई है।

सामने ब्लैक कलर के बैग पड़े हैं बैग के पीछे बाल्टियां पड़ी हुई है।

हर गाड़ी के ऊपर से देखे तो बहुत सारे पेड़ है पेड़ों की डालीयां इधर उधर --